इस तस्वीर में कई बड़ी इमारत है इमारत की दीवारें सफेद रंग की है और सुनहरे रंग की है।

रोड पर स्ट्रीट लाइट भी लगा हुआ है।

तस्वीर में पेड़ पौधे हैं पेड़ पौधे हरे रंग के हैं तस्वीर में एक इमारत भी है इमारत की दीवारें नीली रंग की है।

आसमान साफ है पोस्टर है पोस्टर पर भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केंद्र लोकसभा केंद्र लिखा हुआ है।

इमारत की गेट भूरे रंग का है।

इमारत की दीवारें पीली रंग की है दीवार पर कुछ पोस्टर टांगे गए हैं।

चारों तरफ पेड़ पौधे हैं।

यह तस्वीर एक छोटे से दुकान का है।

दरवाजे पर पर्दा लगा हुआ है।

जो सफेद रंग के पोशाक पहने हैं।

पर्दे पर सजावट किया है।

कमरे की दीवार पर ए_सी यूनिट भी है जो सफेद रंग का है।

कमरे में लाल कलर की कुर्सी भी है कमरे की दीवारें हरा और गुलाबी रंग का है।

गुब्बारे का रंग सफेद और लाल है फूल का रंग नारंगी है।

कमरे में कई बड़े सेल्फ है जो हरे रंग के हैं।

यह तस्वीर खुले क्षेत्र का है तस्वीर के मैदान में एक गोलाकार बीच में खंभा है।

कुछ पेड़ पौधों में फूल है जो गुलाबी रंग के हैं।